इसमें हमे बहौत सारे यहाँ घर नजर आ रहे हैं और यहाँ एक घर बनने का काम हो रहा है जो बहौत ही अच्छे से घर बनाया जा रहा है।

यह एक हमें बहोत ही अच्छा और बहोत ही सुंदर-सा एक जगह दिखाया गया है जो देखने में काफी सुंदर --

यह दिखने के साथ साथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा और इसे बहुत ही मेहनत से बनाया गया है और यह बहुत ही खूबसूरत भी और बहुत ही सुंदर बहुत ही बड़ा बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है।

यह एक हमें बोहोत ही अच्छा और बोहोत ही सुंदर सा एक जगह दिखाया गया है जो देखने में काफी सुंदर और बड़ा है। यहाँ बोहोत दूर-दूर से लोग इसे देखने ओर घूमने के लिए आते हैं।

और बहुत ही कम दामो में इसीलिए लोग इस सलून को बोहोत ही ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ बोहोत न्यु न्यू फैसनस के बाल काटे जाते हैं बहोत ही न्यू न्यू मोडलिंग का --

यह एक हमें बहोत ही अच्छा और बहोत ही सुन्दर सा एक जगह दिखाया गया है। जो देखने में काफी सुंदर और बड़ा है।